जमोल एप्लीकेशन में मॉडिफाई डिस्प्ले और व्यू के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे स्क्रीन पर मॉडल को रोटेट ज़ूम मूव और स्पिन करना
व्यू को संशोधित करना
डिस्प्ले का स्टाइल बदलना
परमाणुओं और बॉन्ड्स का कलर और साइज बदलना
इमेज को एक्सेस और बाउंड बॉक्स के साथ दर्शाना
इमेज को अनेक फाइल फॉर्मेट्स में सेव करना
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको निम्न के साथ परिचित होना चाहिए जमोल एप्लीकेशन विंडो और मॉडेलकिट फंक्शन प्रयोग करके मॉडल्स को बनाना और एडिट करना
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबन्टु ओएस वर्जन 1204 जमोल वर्जन 1222 और जावा वर्जन 7 मैंने पैनल पर 2 chloro 1 प्रोपेनॉल के मॉडल के साथ एक नयी जमोल विंडो खोली है
स्ट्रक्चर के बेहतर दृश्य के लिए हम मॉडल को रोटेट और ज़ूम कर सकते हैं
मॉडल को रोटेट करने के लिए टूलबार पर रोटेट मॉलिक्यूल आइकन पर क्लिक करें
मॉडल पर क्लिक करें और देखें कि कर्सर हैंड आइकन में बदलता है
माउस बटन को पकड़ें पैनल पर माउस को खींचें
आप देख सकते हैं कि मॉडल रोटेट हो रहा है
ज़ूम इन और ज़ूम आउट के लिए पैनल पर कर्सर रखें
ज़ूम आउट के लिए माउस व्हील को ऊपर और ज़ूम इन के लिए नीचे मूव करें
पैनल पर मॉडल को मूव करने के लिए कर्सर को मॉडल पर रखें
कीबोर्ड पर Shift बटन को पकड़ें
डबल क्लिक करें और माउस खीचें
विस्तृत विवरण के लिए पॉप अप मेन्यू में उपलब्ध माउस मैनुअल को देखें
पॉप अप मेन्यू खोलें और नीचे अबाउट तक जाएँ फिर जमोल 1222 सिलेक्ट करें और माउस मैनुअल पर क्लिक करें
यदि आप इंटरनेट से जुड़े हुए है माउस मैनुअल के साथ एक वेब पेज स्क्रीन पर दिखाई देता है
पॉप अप मेन्यू से एग्ज़िट के लिए पैनल पर क्लिक करें
पैनल पर अणु को स्वचालित रूप से स्पिन करने के लिए पॉप अप मेनू खोलें
नीचे स्पिन तक जाएँ और फिर ओन विकल्प पर क्लिक करें
हम देख सकते हैं कि पैनल पर मॉडल स्पिन हो रहा है
स्पिन को बंद करने के लिए पॉप अप मेन्यू फिर से खोलें
नीचे स्पिन तक जाएँ और ओफ पर क्लिक करें
एक नियत कार्य में 2 chloro 3 iodo पेंटाने का मॉडल बनायें
पॉप अप मेन्यू में स्पिन विकल्प जाँचें
स्पिन की दिशा ज़ एक्सिस और रेट ऑफ़ स्पिन 40 से बदलें
संकेत पॉप अप मेन्यू में सेट ज़ रते विकल्प प्रयोग करें
आपका पूर्ण नियत कार्य निम्न प्रकार दिखना चाहिए
अब हम व्यू मेन्यू के बारे में सीखते हैं
मेन्यू बार पर व्यू मेन्यू मॉडल को विभिन्न एंगल्स से देखने के विकल्प रखता है
व्यू मेन्यू पर क्लिक करें
मेन्यू में देखें और उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से चुनें
उदाहरण के लिए मैं टॉप व्यू चुनुँगी
टॉप विकल्प पर क्लिक करें
स्क्रीन पर इमेज प्रदर्शित करती है कि टॉप से अणु कैसा दिखता है
हम इस व्यू को इमेज की तरह विभिन्न फाइल फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं
सेव करेंट व्यू एएस एएन इमेज आइकन पर क्लिक करें
सेव डायलॉग बॉक्स दिखता है
फाइल फॉर्मेट सिलेक्ट करने के लिए इमेज टाइप के विकल्पों में देखें
मैं जेपीईजी फॉर्मेट सिलेक्ट करूँगी
उस फोल्डर को खोलें जिसमें आप फाइल सेव करना चाहते हैं
मैं इसे डेस्कटॉप पर चाहती हूँ
डेस्कटॉप सिलेक्ट करें और ओपन बटन पर क्लिक करें
फाइल नामे टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करें 2 chloro 1 प्रोपेनॉल फाइल्स ओएफ टाइप पर जाएँ और जेपीजी सिलेक्ट करें
सेव बटन पर क्लिक करें
अब इमेज डेस्कटॉप पर जेपीईजी फॉर्मेट में सेव होगी
आणविक मॉडल के प्रदर्शन के स्टाइल को विभिन्न तरीकों से रूपांतरित किया जा सकता है
यदि आवश्यक हो तो इस अणु में परमाणुओं और बॉन्ड्स के कलर और साइज को बदला जा सकता है
हमारे पास अणु या सिलेक्ट सेट में सारे परमाणुओं को रूपांतरित करने का विकल्प है
पैनल पर मॉडल का डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले बॉल एंड स्टिक का है
डिस्प्ले को सीपीके स्पेस फिल में बदलने के लिए पॉप अप मेन्यू खोलें
सिलेक्ट पर जाएँ और पूरे अणु को संशोधित करने के लिए अल्ल पर क्लिक करें
पॉप अप मेन्यू दोबारा खोलें
नीचे स्टाइल तक जाएँ सब मेन्यू से शीम सिलेक्ट करें
और सीपीके स्पेसफिल विकल्प पर क्लिक करें
स्क्रीन पर मॉडल सीपीके स्पेसफिल में बदल गया है
अब हम इसे वापस बॉल एंड स्टिक मॉडल में बदलते हैं
अब पहले की तरह ही समान स्टेप्स का अनुसरण करते हैं
पॉप अप मेन्यू खोलें
नीचे स्टाइल तक जाएँ शीम सिलेक्ट करें और बॉल एंड स्टिक विकल्प पर क्लिक करें
अब मॉडल बॉल एंड स्टिक स्टाइल डिस्प्ले में बदल गया है
मेन्यू बार पर पॉप अप मेन्यू और डिस्प्ले मेन्यू का प्रयोग करके भी बॉन्ड्स के साइज़ को बदला जा सकता है
डिस्प्ले मेन्यू पर क्लिक करें और बोंड सिलेक्ट करें
सब मेन्यू एंगस्ट्रॉम यूनिट्स में अलग अलग साइज़ डाइऐमिटर के बॉन्ड्स के विकल्प रखता है
उदाहरण के लिए मैं 01 एंगस्ट्रॉम सिलेक्ट करूँगी और इस पर क्लिक करें
बॉन्ड्स की मोटाई में बदलाव पर ध्यान दें
हम परमाणुओं और बॉन्ड्स का रंग भी बदल सकते हैं
मैं मॉडल में सारे कार्बन परमाणुओं का रंग पीले से बदलना चाहती हूँ
ऐसा करने के लिए पॉप अप मेन्यू खोलें और सिलेक्ट पर जाएँ
नीचे एलिमेंट पर जाएँ और कार्बन पर क्लिक करें
पॉप अप मेन्यू दोबारा खोलें और कलर सिलेक्ट करें
फिर एटम्स सिलेक्ट करें और येलो विकल्प पर क्लिक करें
मॉडल में सारे कार्बन्स अब पीले रंग में दिखाई देते हैं
अब देखते हैं कि बॉन्ड्स का रंग कैसे बदलते हैं
पॉप अप मेन्यू खोले और अल्ल सिलेक्ट करें
पॉप अप मेन्यू दोबारा खोलें
नीचे कलर पर जाएँ सब मेन्यू से बॉन्ड्स सिलेक्ट करें
नीचे जाएँ और ब्लू विकल्प पर क्लिक करें
सारे बॉन्ड्स अब नीले रंग में हैं
हम इमेज को xय और ज़ एक्सीस और बॉउन्डिंग बॉक्स के अंदर प्रदर्शित कर सकते हैं
पॉप अप मेन्यू खोलें स्टाइल सिलेक्ट करें
और एक्सेस विकल्प तक जाएँ
सब मेन्यू से पिक्सेल विड्थ सिलेक्ट करें
मैं पिक्सेल विड्थ में 3 पीक्स
चुनूँगी
अब हमारे पास सारी एक्सीस के साथ स्क्रीन पर मॉडल है
इमेज के चारों तरफ बाउंड बॉक्स बनाने के लिए पॉप अप मेन्यू खोलें
स्टाइल तक जाएँ और विकल्पों से बाउंडबॉक्स सिलेक्ट करें
पिक्सेल विड्थ सिलेक्ट करें और पिक्सेल विड्थ 3 पीक्स पर क्लिक करें
स्क्रीन पर हमारे पास एक्सेस के साथ बाउंडबॉक्स में 2 chloro 1 प्रोपेनॉल का मॉडल है
बाउंडबॉक्स को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमें ज़ूम इन या ज़ूम आउट करना पड़ सकता है
इमेज सेव करें और प्रोग्राम एग्ज़िट करें
अब सारांशित करते हैं कि हमने क्या सीखा इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सीखा स्क्रीन पर मॉडल को रोटेट ज़ूम मूव और स्पिन करना
मॉडल को विभिन्न एंगल्स से देखना
डिस्प्ले का स्टाइल बदलना
परमाणुओं और बॉन्ड्स का रंग बदलना
हमने निम्न भी सीखा इमेज को एक्सेस एक्सीस और बाउंड बॉक्स के साथ प्रदर्शित करना और इमेज को भिन्न फाइल फॉर्मेट्स में सेव करना
नियत कार्य में 3 amino 1 प्रोपेनॉल का मॉडल बनायें
डिस्प्ले को स्टिक्स में बदलें
मॉडल में सारे हाइड्रोजन्स का रंग हरे में बदलें
सारे बॉन्ड्स का रंग पीले में बदलें
आपका पूर्ण नियत कार्य निम्न प्रकार दिखना चाहिए
निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें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
अधिक जानकारी के कृपया contactspoken tutorialorg को लिखें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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद